पौधे हैं जो देखने में बहुत हरा-भरा लग --

जिसका उम्म एक घेराव करने एक --

एक तस्वीर लगा हुआ है।